यह एक कैफ़े हैंजिसमें पांच छह लोग खड़े हुए हैं।

और ऊपर व्हाइट कलर की लाइट दिख रही है वह ब्लू कलर का रेड बैग दिख रहा है।